कलरफुल नहीं है। यह गंदे पिल्लर दिख रहे हैं आगे के बिल्कुल सफेद पिल्लर दिख रहे है।

इस चित्र में हम सूर्य देव विधि महाविद्यालय देख रहे हैं इसके मेन दरवाजे बंद दिख रहे हैं इसकी लाल दीवाल दिख रही है।

कैमरे भी दिख रहे हैं ऊपर लाइट भी दिख रही है छत का कलर सफेद दिख रहा है बहोत भारी पेड़ दिख रहे--

चारों तरफ चांदनी लगी हुई हैं चांदनी में गुलदस्ते लगे हुए है ऊपर सीलिंग में लाइट भी दिख रही है।

इस चित्र में हम एक रोड के किनारे दुकान देख रहे हैं दुकान के ऊपर एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है साइन बोर्ड में लाइट भी जल रही है उसके ऊपर तार दिख रही है।

इस चित्र में हम एक क्लास रूम देख रहे हैं क्लास रूम में बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं कुछ आदमी ने सिर में टोपा लगाया हुआ है।